एक प्लेट में कुछ खाने का आइटम रखा हुआ है जिसमें चावल दिख रहा है दाल वगैरा है।

कार्टून बने हुए हैं प्लेट में खाने का सामान है।

कलर का ये पेंट हुआ है ऊपर कैमरा लगा हुआ है इलेक्ट्रिक सीढ़ियां गयी हुई हैं।

नीचे की ओर फर्श पे निकास लिखा हुआ है जो हरे रंग का एरो बना हुआ है।

किसी नया ऑफिस का दृश्य है।

एक मस्जिद का दृश्य है जहां पे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

टोपी लगाए हुए हैं कुर्ता पजामा पहने हुए हैं।

यहां की उसमें टाइल्स में कुछ पेड़ लगे हुए हैं जिसमें लाल कलर के पेड़ दिख रहे हैं।

के साइड से एक टाइल्स के रास्ता गई हुई है।

बजाज कंपनी है जिसमे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखी हुई है।

जो हो रहा है जिसपे महिला और पुरुष साथ में डांस कर रहे है।

जहां पे कई सारे नल लगे हुए हैं।

जो फूल तरीके फूल बने हुए हैं टाइल्स में --

कुछ टेडी बीयर बने हुए हैं।

इसमें लकड़ी के निकासी कटी हुई है।

हाथ को फैलाए हुए डांस कर रही है।

इसमें नीले और पीले रंग का वॉल बनी हुई है।

यह एक मकैनिकल का दृश्य है जो मकैनिकल --

ऊपर काली रंग की चैन है जो ऊपर की ओर लटकती हुई खींच रही है।

ऊपर की ओर गोल्डन हार्वेस्ट लिखा हुआ है इससे पंद्रह नंबर लिखा हुआ उसके पीछे अठारह नंबर लिखा हुआ है।

कि स्कूटी से आदमी जा रहा हुआ है।

गाड़ियां निकल रही है एक ऑटो रिक्सा निकल रहा है।

ऊपर की ओर एक न उम्म पक्का पूल गया हुआ है जो कि अभी बन्न बन रहा है।

कुछ बच्चे बैठे हुए हैं कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं।

खेलकूद में मनोरंजन कर रहे हैं।

प्लेट चम्मच ये सारी चीजें रखी हुई हैं।

उसी के पास में खजूर के पेड़ लगे हुए हैं।

बैकग्राउंड इसका लाल रंग से पेंट हुआ है।

बाइक खड़ी हुई है पेड़ लगे हुए हैं।

जिसपे वीडियो गेम के रिमोट वगैरा रखे हुए हैं कुछ सी_डी प्लेयर रखे हुए हैं फीफा ट्वेंटी टू लिखा हुआ है।

वीडियो गेम का सामान रखा हुआ है। ऊपर की ओर लाइट लगी हुई है। नीचे टाइल्स की फर्श है।

पंजाबी भाषा में कुछ नेम प्लेट पे बैनर पर लिखा हुआ--

मछलियां दिख रही है कुछ आंखें खुली है।

आस पास में उसके पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है मम्मी डैडी के नाम से पास में कपड़े टंगे हुए हैं।

छोटे बच्चों के कपड़े बॉयस के कपड़े बड़े बच्चों के कपड़े--